उनके की व्यवस्था की गई। साइड में ही सारी लोड्स के जाने के लिए रस्ता बन गया है तथा चौथे मंजिल के ऊपर की छत --

यह एक शोरूम के अंदर का सामन चित्र दिखाई दे रहा है तथा जिसमे जिप्सी से रखे हुए फोर ओर --

है एक किले के गेट का सामूहिक चित्र दिखाई दे रहा है। पहले-पहले के लोग और शहर के बाहर का निर्माण किया करते थे ताकि शहर से बाहर निकलने वाले रोगों को देखा जा सके।

जोकि व्यवस्थित पद्धति के अनुसार होने वाली नियमों की बातें तति जो न्यू पद्धति के अनुसार --

जो पेड़ के पत्ते उस खेत के अंदर खड़े हुए है जो खेताई बुआई का काम चल रहा है तथा इस इस खेत के अंदर जो बड़े-बड़े पेड़ खड़े हुए है जिनकी छाँव में खड़े --

हर व्यक्ति अ धुप से बचा जा सकता है। ये ब्यवस्ता का निर्मार है। ये एक गांव में जमीन में होने वाला कार्य है जो व्यवस्थित पद्दति के --

ये एक कमरे का सामूहिक चित्र दिखाई दे रहा है जिसके बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए तथा वह लोग खड़े होकर वहाँ पर --

बॉडी के किसी भी पार्ट्स में होने वाले पेन के द्वारा फिजियोथेरेपी के द्वारा इलाज किया जाता है जहाँ पर सिर्फ मशीनों की तरंगो के द्वारा --

हाथ पैरो में खून के प्रभाव को प्रभा को रक्त को सही किया जाता है जिससे शरीर के प्रत्येक पार्ट्स में दर्द होना बंद हो जाये।

अपने शरीर में होने वाले चर्बी को कम करने का पूर्ण समर्थक पूरा प्रयास कर रहा है जो स्थित प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित है।

एक अ-अ एक गवर्नमेंट-अ व्यवस्था दिखाई दे रही है तथा यह एक हॉस्पिटल का सामूहिक चित्र दिखाई दे रहा है तथा जिसके अंदर डॉक्टर के नाम का --

काम्प्लेक्स है जिसके नीचे एक बैंक दिखाई दे रहा है तथा ऊपर काम्प्लेक्स पे दुकाने बनी हुई है जोकि अभी पूर्ण व्यवस्थित रूप से चलनी स्टार्ट नहीं हुई है तथा एसबीआई का एटीएम इसके पास दिखाई दे रहा है जोकि --

एक जिम के अंदर का सामुहिक चित्र दिखाई दे रहा है तथा इसके ऊपर बैठकर मशीन पर करता है तथा इस प्रकार की एक्सरसाइज से कमर और --

ये ये एसबीआई के ब्रांच के बाहर का सामुहिक चित्र दिखाई दे रहा है तथा एक व्यक्ति बैंक से बाहर निकलकर अपनी टू व्हीलर के पास जाने का प्रयत्न कर रहा है तथा बाहर कुछ और लोग भी खड़े हुए हैं।

अ साइड में लगी हुए चॉकलेट भी प्रतिमा को और सुंदर देखने योगदान दे रही हैं अकेले के बहुत अच्छे केक की बहुत सुंदर प्रतिमा है जो कि बहुत सुंदर रूपेण दिखाई दे रही है।

जहाँ से एक बू खम्बे को लाइट प्रोवाइड की जाती है।

एक नदी के सरोवर जल दिखाई दे रहा है जोकि एक उपजाऊ जमीन के पास स्थित है इसमें छोटे-छोटे पेड़ पौधे इस नदी के आस-पास जो लगाएं गएं --

इसमें देखिए सुंदर सुबह को देख रहे हैं। इनका भी बड़ा सुंदर रूप प्रतीत हो रहा है तथा ये उपजाऊ जमीन मिट्टी उर्वरक के रूप में दिखाई दे रही है। जो व्यवस्थित प्रणाली के अनुसार है।

व्यक्ति के सेव बनाने वाले का इंतजार कर रहा है तथा वो फोन पर बात कर रहा है। यहाँ पर सभी प्रकार के साधन उपलब्ध होने के वजह से यह व्यक्ति यहाँ पर नाई। यहाँ सलून मे अपने --

यह एक कोयल का समान चित्र दिखाई दे रहा है जो एक उपजाऊ जमीन के ऊपर चल रही है तथा एक खेती का एक सामूहिक --

तरह का जनरल स्टोर दिखाई दे रहा था जिसमें किराने के सामान के साथ साथ किताबों से सम्बंधित सभी प्रकार के उपहार दिखाई दे रहे हैं।